लगत हे कोलेज लगत हे कालेज के पीछे पेड हे हारा भरा घास हे।

बने च कन ए जघा गाड़ी खड़े हे पाँच छे ठो कमरा छे ठो कमरा दिखत हे दु तीन ठो खिड़की दिखत हे।

पीछे में गमला पौधा लगे हे खिड़की हे बहुत ग्रिल हे मकान हे पेड़ बने हे।

एक्सलेंसी महाविद्यालय पी.जी.डी.सी.ए एवं डी.सी.ए शासन से मान्यता प्राप्त हैं।

एहु मन नवा माकन बनत थे पांच फिट तक प्लस जुड़ाई हो हे।

एक ठो गाड़ी हवे एक झन माता राम खड़े हे मुह कान बंधे हे।

यह सामने मे बोड लगे हे सफेद कलर के।

सामने गाड़ी खड़े हे दु ठन ए_सी दिखत हे एक पेड़ के पत्ता दिखत हे खम्भा दिखत हे मोबाइल के टावर दिखत हे इंडियन कॉफी हाउस इंडियन कॉफी हाउस--

कैस्ट्रोल सर्विस श्रीवास मारुती

सरविच् सेंटर हे एकझन भैया मोबईल म बात करत खुरशी में बेठे हे अउ इति गाड़ी धोवावथे ।

ये ऊपर में जो समने म साईकिल हे अउ वो साईकिल में पानी के डिब्बा हे नीला कलर के --

इकझन भैया एति कोन्टा में खड़े हे सामने म--